इस चित्र में एक मैदान है जिसमें बहुत सी कार खड़ी हुई है।

यह एक रोड है जिस पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है।

और इसकी छत पर तीन पंखे टंगे हुए हैं।

यह एक जिम है जिसमें बहोत सी मशीन रखी हुई है।

और इसमें एक काउंटर रखा हुआ है।

और इसके बाहर एक बिजली का खम्भा लगा हुआ है।